और टेबल में रखा हुआ स्कैनर और प्रिंटर भी दिखाई दे रहा है।

और उसे बरामदा में बहोत सारा फ्लावर पॉट्स भी टांगा हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में दुकान दिखाई दे रहा है।

और इस घर के आगे नेट भी टंगा हुआ है।

और सामने में दो खिरकिया भी दिखाई दे रहा है।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

और मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा सा तार भी दिखाई दे रहा है।

और एक सीमेंट का पिलर भी दिखाई दे रहा है।

और इस मॉल में बहोत सारे लाइट भी लगाया हुआ है।